यहां पर एक मिठाई का दुकान दिख रहा है।

और बहुत ही अच्छा है।

यहां पर बहोत सारी चीजें हैं।

पानी वगैरा भी है झरने जो कि।

बहोत अच्छे दिख भी रहे हैं।

झालर वगैरह लगा हुआ है जो की बहोत अच्छा दिख रहा है।

और ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो की--

और ये कुछ चीजें की दुकान हैं जो की--

बहोत अच्छा दिख रहें हैं।

वो बहुत अच्छे से सजा है।

रखें हैं बहोत अच्छे दिख रहे हैं।

और यहां भी बनते हुए दिख रहा--

और यहाँ एक मंदिर भी है और यहाँ बहुत बड़ा --

और बाहर से आदमी लोग भी है।

यहां पर बहोत से अ बच्चे आदमी लोग हैं।